बाद मे ये बहुत बड़ी शील को एक गाड़ी पर उठा कर कही ई-लेजा रही है एक घर दिखाई दे रहा है जिसके दीवार व्हाइट कलर पैंट की गई है।

इस इमेज में हमें चार पांच आदमी दिखाई दे रहे हैं ये हाथ में कुछ कागज रखे हुए हैं इसको पढ़ रहे हैं।

हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं साइड में एक घर दिखाई दे रहा है जिसमे छाए हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ--

और लाल कलर की हमें सीढियां दिख रही हैं और बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़का दोनो हाथ फैलाए हुए एक पत्थर पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पत्थर लाइन से रखे हुए दिख रहे हैं दूर हमें एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे हमें पेड़ भी दिखाई दे रहे है और हम्म हमें ये घर भी दिखाई दे रहा है पीछे--

एक छोटा लड़का खड़ा हुआ है जो येलो कलर की शर्ट और रेड कलर का पैंट पहने हुए दिखाई दे रहा है।